बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ पर्दे दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक बल्ब दिखाई दे--

इस तस्वीर में मुझे कुछ कमरे दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक पंडाल दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक झूमर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ नल दिखाई दे रही--